इस तस्वीर में एक आदमी मछलियों--

पौधे नजर आ रहे है।

सफेद रंग की सिल्वर रंग की और फर्श काफी गीला भी हैं।

जिसके साथ एक सफेद कार भी आ रही है।

मूर्ति है जिसके नीचे एक युवक खड़ा है जोकि सफेद शर्ट --